घर के आगे हरी हरी घासे हैं और घर के बगल में एक छोटा सा टीन का घर है।

एक तरफ दीवार पे बैनर लगा है मैन्यू का।

एक बेड भी है जिसपे दो तकिए लगे हुए हैं।

यहां किसी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया जा रहा है।

दीए के स्टैंड के साइड में बहुत सारे लोग गोल करके खड़े हुए हैं।

एक है भीम की फोटो ।

दुकान के एक साइड में एक कपड़ा भी टंगा हुआ है।